ग्राउड है यहा लाइटें लगी हुई है बीच में टाइल्स लगल है रास्ते है और हु खंभा दिख रही है।